जिसमें बाल दाढ़ी लिखा हुआ है स्पा एंड सैलोन ।

यह किसी मोटर गैरेज का पिक्चर है जिसमें की एक कार --

यह किसी गैरेज का पिक्चर है जिसमें कि एक मेकानिक कार को --

जो भी रेता-रिपती का माल डाल रहे हैं छड़ दिख रही हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं।